की बहोत ही प्राचीन एवं पुराना --

जिसमें ये बंदा सभी लोगों को ट्रेनिंग कर --

सो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये तीनों सिलेन --

अपनी जॉगिंग या रनिंग जो भी बोल सकते है ये करते हुए आपको दिख रहे हैं।

ये शाम का नजारा आप देख सकते हैं --